जो कि एक तलाब है जिसमें पानी भरा हुआ है।

यहाँ एक वाटर पार्क हैं।

एक पेड़ हैं जो काफी अच्छा लग रहा हैं।

काफी व्रक चेंज और काफी खूबसूरन लग रहे हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ कोई माइक्रोसॉफ्ट वगैरह दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर अभी कुछ पब्लिक वगैरह नहीं हैं।